वाइट कलर से पेंट है और रेड कलर नीचे पे टाइल लगा हुआ है साइड पे एक चोंकी है एक झरना है और--

और उधर कुछ हरे-हरे पेड़ है इसके बाद उधर एक कुछ का मंदिर है जो स्टेचू --

उसके न पीछे में एक बहुत भी कुछ लिखा हुआ है।